ये कोई बैंक लग रहा है जहाँ पे सीटिंग एरिया है जो यहाँ पे वाइट कलर की चेयर लगी हुई है एक बैग ब्लैक कलर का चेयर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे बहोत सारे केबिन्स बनी हुई है यहाँ पे वन टू अ केबिन बोल के लिखा हुआ है यह शायद न्यू इनॉगरेशन हुआ है बैंक का जहाँ पे बहोत सारे बलून से सजावट की गई है और फूलो से--

इन्होने एक मुर-अ-मुड़ मुकुट पहना हुआ है।

सामने में यहाँ पे बच्चे लोग अपना जूता और बैग रखे है और यहाँ पे अ मैदान मे थोड़े-थोड़े घास दिखाई दे रहे है।

एक घर है जहाँ पे आ ये घर ब्लू रंग की है उसके अगल में अगल-बगल यहाँ पे खेत दिखाई दे रहे है खेत में बहोत सारी घास और यहाँ पे कुछ पत्ते दिखाई दे रहे है यहाँ पे दूर-दूर में बहोत सारे यहाँ पे घर दिखाई दे रहे है।

एक बरा सा यहाँ पे अ पेड़ दिखाई दे रहा है दो टावर दिखाई दे रही है।

ये कोई बुक की शॉप है जहाँ पे बोहत सारे शेल्वेस में बोहत सारा बुक रखा हुआ है और यहाँ पे बोहत सारा यहाँ पे एक पेपर चिपका हुआ है शेल्वेस मैं --

बाग मे बोहत सुन्दर यहाँ पे गार्डनिंग किआ हुआ है यहाँ पे बैठने के लिए यहाँ पे रॉक्स बना हुआ है जो बोहत सुन्दर लग रहा है यह गार्डन बोहत यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है।